ज्वेलरीस के साथ में कुछ लाइट्स का डेकोरेशन भी किया हुआ है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

उसी के साथ-साथ उल्टे हाथ पर एक माता दुर्गा की भी मूर्ति रखी हुई है जिसका कि कलर भी गोल्डन है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक प्लेन खड़ा हुआ है प्लेन के ऊपर इंडिगो लिखा हुआ है।

बच्चे ने वाइट कलर की पेंट और ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है लेडीज के हाथ में एक पर्स भी है।

ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग्स लगी हुई है और ये लाइटिंग देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहां पर दो स्कूटी खड़ी हुई हैं जिनमें से एक स्कूटी का कलर --

हिंदी में स्टेट बैंक एटीएम लिखा हुआ है जो कि नीली पट्टी में लिखा हुआ है साथ ही साथ--

एटीएम के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने वाइट कलर का टी-शर्ट तथा ब्लैक कलर का एक लोवर पहना हुआ।